फणे दिवाली का नीसाण हम तें कुछ दरवाजा कुछ गाड़ी का पुर्जा पर्जा दिखेण छा लग्यां अर दिखेण से यु मेकनिक की दुकान छ लगणी।

औ बन कुछ इन्होंने दिखन लाग्या अब पिछाड़ गोटियाँ कुछ पहलवान दिखन लगी जो सफेद साड़ी सा पहनी एक मुंड्या एक भी दिखन छलनी।

पार बिटि खिड़की दिखेण लगीं जैका भीतर बिटी कालू पर्दा छ लग्युं एंच छत पर एक पंखा भी दिखेण छ लग्युं।

दिखेण से लगदु यु चित्रकारी छिन कना पिछाड़ी बिटि हम त कुछ लोग छ दिखेण लग्यां जो योंकि फोटो छ खिचण लग्यां।